दोनों ही तरफ से बड़े-बड़े द्रखत है और बीच से एक रास्ता है इस रास्ते पर एक-दो लोग भी खड़े है।

इसके दीवाल पर वाईट कलर का स्टे कपड़ा लगा हुआ है और ओरेंज वाईट और ग्रीन कलर बैलून से सजाया हुआ है।

ये बहुत बड़ा मैदान है मैदान साफ-सुथरा हैं जिसमें लोग लोग है।

और मैदान के पीछे बहुत से दरख़्त भी है और आसमान पर सूरज भी दिखाई दे रहा है।

ये किसी पार्क की तस्वीर है जहां पर गोल सा कुआं जैसा कुछ बना हुआ है।